यह एक कित कई सारे हरे ये कई सारे पहाड़ के चित्र दिखाई दे रहे हैं और इस पहाड़ के नीचे एक मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर देखने में काफी सुंदर लग रहा है।

इस लॉज के बाहर कई सारे दुल्हा की बग्गी जा रहे हैं और ये दुल्हा की बग्गी काफी अच्छी सजी हुई है और इस बग्गी में दुल्हा बैठेगा।